कहीं काड़खाना का है जिसके आगे गाड़ी लगी हुई है।

एक खजूर का भी पेड़ है और सबकी डेकोरेटिंग बहुत अच्छी की हुई है।

सब पेड़ पौधे एकदम बारीकी से सजाया हुआ है सबका कटिंग बहुत अच्छा किया हुआ है।

और आसपास खाली जंगल है जंगल है।

ये बल्ब लगे हुए हैं।

और इसके आसपास बहुत सारे--

पेड-पौधे लगे हुए हैं एक बीच में बिल्डिंग --

जगह है ये एक योगा स्थल है जहां पर काफी लोग योगा कर रहे हैं।

यह जो यह प्लेस है यह एक--

और बहुत सारे सामान भी रखे हुए है।

कुछ बात को समझा रहे हैं और बहुत सारे--

आदमी उसकी बातों को सुन रहे हैं।

यह जो जगह है यह कहीं कारखाना का लग रहा है जहां पर एक बिल्डिंग है।

कपटी है कपटी में चाट है उसके ऊपर प्याज डाला गया है।

ये जो है ये रोड साइड का स्पेस लग रहा है जिसमें--

एक स्टॉल भी है स्टॉल अभी फिलहाल शायद बंद है।

अ बहुत सारा जिम स्टिक रखा हुआ है कह सकते हैं कि --

और सबको अच्छे से सजाया हुआ है।

ये एक साइड का कॉर्नर लग रहा है जहां पर एसी रूम भी है।

और को एक लड़के हैं जो कि अपने मोबाइल पर बतिया रहे हैं।

इसकी फ्लोर काफी अच्छी की गई है।

और यहां पर सब चीज अच्छे से रखा हुआ है जैसे कि तबला हो गया।

ये सारी चीज यहां पर मौजूद है।

ये एक मूर्ति है जो कि कृष्ण भगवान की है।

बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है इसकी बनावट।

ये एक पार्क का स्पेस है जहां पर बहुत सारे--

सेहत को बनाने के लिए जिम करने आते हैं।

खड़ी हैं और इसके पीछे--

ये जो स्पेस है इसको कह सकते हैं कि एक मंदिर होगा जिसकी--

और इसके बाहर कुछ लोग खड़े हैं।

यहां पर तरह-तरह के डंबल भी हैं।

काफी ज्यादा हमारे सेहत को बनाने में हेल्फ करती है।

है और एक आदमी खड़ा भी है।

यह एक अपार्टमेंट कह सकते हैं कि यह स्कूल है जहां पर न्यू ईरा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

जहां पर बच्चे आते हैं अपने--

जहां जियो की पीले रंग की है।

ये एक नदी की सीन लग रही है जिसके आस-पास बहुत सारे लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं कह सकते है कि ये तालाब भी है।

जो कि और उस तरफ देखा जाए तो पेड़ पौधे भी हैं।

ये घरी का है जो कि एक--

और वाइट कलर की जो बाउंड्री है।

ये एक साइड का इलाका लग रहा है जिसके ऊपर देखा जाए तो पानी ही पानी है और इसके बार देखा जाए तो एक कार --

ये एक मार्केट का स्पेस लग रहा है जहां पर ये जो इमारत है।

वो रेड कलर से किया हुआ है।

और इसके आसपास काफी ज्यादा लोग खड़े हैं।

उसके बगल में देखा जाए तो दो बस भी खड़ी है जो कि--

यह जो जगह है यह एक शॉप लग रहा है जहां पर बहुत सारे--

अरे लोग तो नहीं है दो ही पर्सन है और इसके पोस्टर जो लगी हुई है।

दुकान है जहाँ पर तरह-तरह के --

जो कि कार ब्लैक रंग सी है और जो उस साइड बस लगी हुई है।

जो जगह है वह काफी ज्यादा शांत का माहौल लग रहा है।

और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो आपस में चाय पीते हुए बात कर रहे हैं।

शॉप होगा शॉप नहीं कह सकते कोई --

ये जो स्पेस है वो काफी ज्यादा खाली दिखाई दे रहा है यहां पर एक ब्लू कलर का बॉल --

काफी बड़े-बड़े वॉल है और कुछ पंखे भी हैं।

ये जो स्पेस है वो बाहर का लग रहा है मतलब कि कोई--

ये पेड़ पौधे हैं मरक मार्केट का स्थान लग रहा है जहां पर बहुत सारे लोग--

को इस चीज का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर--

यह शादी के को देखने के लिए आए हैं और इसके आसपास बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

ये जो जो स्पेस लग रहा है दिखाई दे रहा है वो एक --

खाना स्टॉल का है जहां पर लोग--

यहाँ पर बैठकर उसको देख रहा है कि यह कैसे सजा रहे हैं।

जो शीशा लगा हुआ है उसके पीछे देखा जाए --

तो दो पुतले हैं जो कि एक जेंट्स का है एक लेडीज का है।

देखने में तो ये न्यू लग रही है।

बहुत सारे दुकान दिखाई दे रहे हैं।